इस तस्वीर में एक बड़ी नहर दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में दो प्रिंट करने वाली मशीन रखी हुई है।

जिसके बराबर साइड में एक डस्टबिन रखा हुआ है।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

इस तस्वीर में एक ट्रेन पटरी पर खड़ी हुई है।

और इसके पास एक बड़ा पहाड़ भी दिख रहा है।

जिसके अंदर बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में दो तीन व्यक्ति चेयर पर बैठे दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर मे दो कुर्सियां रखी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसके पीछे शीशे लगे दिखाई दे रहे है।

उस शीशों में कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है।

जिसके अंदर बहुत सारी डंपल्स और बहुत सारे सामान रखे हुए है।

और बराबर वाली दुकान में एक जीना भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में दो मूर्ति रखी दिखाई दे रही है।

जिसके गले में ये दो माला भी पड़ी दिखाई दे रही है।

जिसके अंदर बहुत सारी छोटी और बड़ी साइकल रखी दिखाई दे रही है।

और कुछ पेड़ भी उगे हुए दिखाई दे रहे है।

जिसके बाहर एक जन सेवा का एक पोस्टर लगा हुआ है।

और दीवारों पर गुब्बारे भी लगे दिखाई दे रहे है।

और दीवार पर तीन चार घड़ी भी लगी हुई है।

कुछ पहाड़ भी दिखाई दे रहे है और कुछ पेड़ भी उगे हुए हैं।

और एक टावर दिखाई दे रहा है और टावर के पीछे कुछ पेड़ लगे हुए है।

कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं और कुछ तौल के कांटे भी रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक बड़ी इमारत दिखाई दे रही है।